यहां एक बस दिखाई दे रहा है जीसमें बहोत सारी आदमी चहर रहे है उतर रहे हैं।

और एक पीछे की साइड कार जा रही है और एक बाइक भी दिखाई दे रहा है जिसमें आदमी सवार है।

यहां एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है जिसका नाम श्री हींग लाज बुक स्टोर है।

साइड में कुछ बाईके दिर दिखाई भी दे रही हैं हमें और जाने का कही रास्ता दिखाई दे रहा है।

क्रीम और नारंगी कलर के यहां साइड में एक गेट दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर के शर्ट में और एक साइड में पुलिस खड़ा हुआ है और सामने की ओर देखे जा रहे--

कुछ पिंक कलर का भी है कुछ मैहरूम कलर ।

साइड की ओर कुछ लड़के भी है यहां--

बहुत सारे बच्चे भी है यहां कुछ--

यहां सामने की ओर एक फील्ड दिखाई दे रहा है।